काली दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ बांस भी पड़े हुए हैं।

बिष्ट डेंटल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल तथा हिंदी में लाल रंग से लिखा हुआ है बिष्ट डेंटल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल यहाँ पर दांतो के कुछ --

पिक्चर भी बनी है डॉक्टर का नाम डॉक्टर जयबीर बिष्ट है।

यहाँ पर कुछ मशीन हैं मशीन के औजार हैं यह सिलेटी कलर की है इस्पे नील कलर --

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यह एक जिम सेंटर है जिम में काले रंग और सफेद रंग की मशीने रखी हुई हैं यह मशीने --

यह पर एक टमाटर है टमाटर का रंग लाल है।

घास दिख रही हैं जिसका रंग हरा है यह पर दूर-दूर तक जानवर दिखाई रहे हैं जो की काले रंग के हैं।

तथा सफ़ेद हैं यह पर छोटे- बड़े हरे कलर के पेड़ लगे हुए हैं यह पर एक छोटा ए. सी. लगा हुआ है जिसका रंग --